भगोआन बच्‍चों के मेकअप कर रही हैं ए सि--

एक रेस्टोरेंट है जिसमे खाना पीना चला हुआ है तो एक आदमी और एक औरत गले मिल रहे है

लोग उसकी पूजा के लिए आते हैं इंडिया के लोग बहुत अच्छे होते हैं इसकी पूजा करते हैं।

ऑरेंज कलर के पड़े है उधर से लड़का आ रहा है।